एक शॉप है शॉप मे भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ है।

और तरह तरह के भगवान की मूर्ति इसमे रखी गई है जो सेल पर्पस से और कार -- हर राइट मे रखी गई है तरह तरह की और कलर मे मूर्तियाँ है और बहुत अच्छे तरह से इसे रखा गया है।

यह एक कार्यालय है और सामने दो बोर्ड लगे हुए है गेट इसका बंद है।

अ - अ - आ अपने झंडा का वो दिखाया गया है एक महापुरुष की एक मूर्ति है जो घोड़े पे सवार है।

एक द्वार है द्वार के को बहुत अच्छे से बनाया गया है द्वार में दो मूर्ति बनायीं गयी है जो रखवाली कर रहा है और ऊपर अच्छे से इसको --